पोस्ट मराठी का फैमिली ढाबा लिखा है।

और नीली कलर की झोपड़ियां बनी हुई है सफेद भी बनी हुई है सफेद पेंट है।

यहां पे पौधा है। यहां पे पेड़ है पानी है।

लाल बिल्डिंग पे नीला पोस्टर लग रहा है बिल्डिंग के बाहर अह पार्किंग है।

बहोत बड़ा ग्राउंड हैं अंदर कार खड़ी हैं।

मदर डेयरी है एक लड़की स्कूटी पे बैठी है एक लड़का जा रहा है बगल में अपाची गाड़ी खड़ी है।

एक आदमी चढ़ के जा रहा है पहाड़ पे--

ये एक बहोत बड़ा मैदान हैं मैदान के सामने एक--

और यहां पे एक लोग जिम कर रहे--

कॉरपोरेशन बैंक यहां पे दो ए_सी लगी है।

शटर लगा हुआ है सामने दो हरे बोर्ड लगे हुए हैं।

और सामने बोतल रखी है व नीला टेबल है।

और मैगी के प्लेट में दो चम्मच रखे हैं।

हरि कारपेट है और बहोत सारे मशीन है और यहां पे लोग जिम कर रहे हैं।

पिंक कलर का पर्दा है ऑरेंज कलर की दीवार है।

घोड़े का डब्बा है डेस्टबिन है।

एक दुकानदार है और एक बच्ची भी खड़ी है।

बहोत सारे स्टूडेंट बैठे हुए है लड़के लड़कियां और एक टीचर सीखा रहे हैं।

और लाइटिंग भी लगी हुई है दुकानदार अपनी चीजें बेच रहे हैं और बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं।

तो बहोत अच्छा आसपास गार्डन बना --

दो डमी भी खड़े कर रखे हैं दुकानदार ने--

बहोत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है।

फूलों की माला बनती है भगवान को चढ़ाई जाती है इन गेंदें के फूल है बहोत अच्छी खुशबू आती है इनमें से।

एक आदमी ने शर्ट पहना हुआ है चेक वाला।